अभी भी ये सीढ़ियां अ मतलब ये जो है अब इलेक्ट्रोनिक सीढ़ी हो चुकी है और इस पर लोग आसानी से आ जा कर सकते हैं। जैसे बूढ़े लोगों को यहाँ पर चलने में बहुत मुश्किल होती --

आप देख पा रहे हैं की यहाँ पर जो गाड़ी है इसे मशीनो द्वारा अ फिर से जो है कहीं टूटने पर इसे जॉइंट किया जा रहा है फिर इसपे कलर चढ़ा दिया जाएगा इसीलिए पता न चले की यहाँ पर टूटा-टूटा हुआ भी है।

इ रानी लक्ष्मी बाई का मूर्ति बना हुआ है और ये कॉलेज मे किसी कैंपस में ग ग्राउंड में लगा हुआ है।